यह एक बड़ी मैकेनिक की दुकान लग रही है यहां पर एक गाड़ी की धुलाई चल रही है सफाई चल रही है।

ऊपर एक ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है कुछ जिसपे कि कुछ लिखा हुआ है।

ये एक ग्राउंड सा नजर आ रहा है इसमें एक लोहे का जाल सा नजर आ रहा है।

और ये एक ईंटों की दीवार लगी हुई है कुछ सामने को मकान से नजर आ रहे हैं।

यहां पर योगा क्लास चल रही है जहां पर बहुत सारी लेडीज और जेंट्स योगा कर रहे हैं।

ये एक मंदिर है यहां एक पुजारी है ये माता रानी की एक मूर्ति नजर आ रही है साईं बाबा के बीच में मूर्ति नजर आ रही है।

यहां एक गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई है एक पीछे से लेडीज बैठी हुई है और काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

ऊपर यलो कलर का बेड वो लाइन लगी हुई है और ऊपर भी बना हुआ है ऊपर--

ग्रिल लगी हुई है ऊपर भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं कुछ लोग नीचे नजर आ रहे हैं।

जैसे कि ये काउंटर बना हुआ है और एक ग्रीन कलर के छोटे-छोटे से पेड़ लगे हुए हैं एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई है।

ये कुछ पोस्टर नजर आ रहे हैं एक टी_ वी_ लगा हुआ है ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है।

एक बड़ी सी खिड़की नजर आ रही है एक पेड़ पर घड़ी सी टंगी हुई नजर आ रही है एक साइड में दरवाजा सा नजर आ रहा --

ये एक बस खड़ी है बस के पास एक आदमी खड़ा है बस का बस के ऊपर समर लिखा हुआ है बस के आगे को एक--

दो सामने को बड़ी-बड़ी शॉप नजर आ रही हैं एक पर फूड क्राफ्ट लिखा हुआ है।

यहां पर ये जिम करने वाली मशीनें रखी हुई हैं एक दो तीन चार मशीनें रखी हुई हैं और एक जेंट्स मशीन पे--

और एक नृत्य करते हुए कुछ बोर्ड लगा हुआ है बैनर लगा हुआ है।

और एक इधर टेबल फैन लगा हुआ है एक बड़ी सी चेयर नजर आ रही है इधर को एक बड़ी सी टेबल नजर आ रही है।

हैं कुछ जेंट्स हैं जो पार्क में बैठे हुए हैं।

जो कट घरों के ऊपर टंकियां नजर आ रही हैं छोटी-छोटी घास है कुछ बड़ी-बड़ी घास नजर आ रही है ग्रीन कलर की।

पीछे को पेड़ नजर आ रहे हैं एक रेड कलर का पेड़ नजर आ रहा है एक ये बिल्डिंग बहुत बड़ी नजर आ रही है।

जिसपे काफी सारी खिड़कियां नजर आ रही हैं एक ट्रक चल रहा है।

एक दरवाजा शीशे का लगा हुआ है पीछे सामने को एक घड़ी लगी हुई है ए_टी_एम लगा हुआ है और एक साइड में को घर बना हुआ है।

ये एक हॉस्पिटल लिखा हुआ नजर आ रहा है जहां पर एक ये जेंट्स बैठा है।

एक बड़ा सा चैनल गेट लगा हुआ है सामने एक घड़ी लगी हुई है दो जेंट्स खड़े हुए हैं।

इस पिक्चर में दो गाढ़ियां खड़ी हुई हैं ऊपर एक छत बनी हुई है बेसमेंट नजर आ रहा है ऊपर से दो खड़ खिड़कियां नजर आ रही हैं कुछ तार लटके हुए हैं।

और कुछ तार इधर को साइड में को लटके हुए हैं काफी बड़ा सा हॉल सा बना हुआ है।

ये एक मार्केट सी नजर आ रही है सामने को दो चैनल गेट लगी हुई शॉप नजर आ रही हैं।

दो-तीन खिड़कियां कई सारे दरवाजे हैं बहुत सारे तार आते हुए जाते हुए खंभों पर नजर आ रहे हैं।

ये एक काफी बहुत बड़ा मैदान है यहाँ पर काफी सारी लेडीजें बैठी हुई हैं।